मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
2018 की यह पहली मन की बात है और दो दिन पूर्व ही हमने गणतन्त्र पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 10 देशों के मुखिया इस समारोह में उपस्थित रहे
मेरे प्यारे देशवासियो मैं आज श्रीमान प्रकाश त्रिपाठी ने NarendraModiApp पर एक लम्बी चिट्ठी लिखी है और मुझसे बहुत आग्रह किया है कि मैं उनके पत्र में लिखे गए विषयों को स्पर्श करूँ
उन्होंने लिखा है 1 फरवरी को अन्तरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला की पुण्य तिथि है
कोलंबिया अन्तरिक्षयान दुर्घटना में वो हमें छोड़ कर चली गयीं लेकिन दुनिया भर में लाखों युवाओं को प्रेरणा दे गयी
मैं भाई प्रकाश जी का आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी लम्बी चिट्ठी में कल्पना चावला की विदाई से प्रारम्भ किया है
यह सबके लिए दुःख की बात है कि हमने कल्पना चावला जी को इतनी कम उम्र में खो दिया लेकिन उन्होंने अपने जीवन से पूरे विश्व में ख़ासकर भारत की हज़ारों लड़कियों को यह संदेश दिया कि नारीशक्ति के लिए कोई सीमा नहीं है
इच्छा और दृढ़ संकल्प हो कुछ कर गुजरने का ज़ज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है
यह देखकर काफी खुशी होती है कि भारत में आज महिलाएँ हर क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और देश का गौरव बढ़ा रही हैं
प्राचीन काल से हमारे देश में महिलाओं का सम्मान उनका समाज में स्थान और उनका योगदान यह पूरी दुनिया को अचंभित करता आया है
भारतीय विदुषियों की लम्बी परम्परा रही है
वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भारत की बहुतसी विदुषियों का योगदान रहा है
लोपामुद्रा गार्गी मैत्रेयी न जाने कितने ही नाम हैं
आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं लेकिन सदियों पहले हमारे शास्त्रों मेंस्कन्दपुराण मेंकहा गया है
दशपुत्र समाकन्या दशपुत्रान प्रवर्धयन्
यत् फलं लभतेमर्त्य तत् लभ्यं कन्यकैकया
अर्थात एक बेटी दस बेटों के बराबर है
दस बेटों से जितना पुण्य मिलेगा एक बेटी से उतना ही पुण्य मिलेगा
यह हमारे समाज में नारी के महत्व को दर्शाता है
और तभी तो हमारे समाज में नारी को शक्ति का दर्जा दिया गया है
यह नारी शक्ति पूरे देश को सारे समाज को परिवार को एकता के सूत्र में बाँधती है
चाहे वैदिक काल की विदुषियां लोपामुद्रा गार्गी मैत्रेयी की विद्वता हो या अक्का महादेवी और मीराबाई का ज्ञान और भक्ति हो चाहे अहिल्याबाई होलकर की शासन व्यवस्था हो या रानी लक्ष्मीबाई की वीरता नारी शक्ति हमेशा हमें प्रेरित करती आयी है
देश का मानसम्मान बढ़ाती आई है
श्रीमान प्रकाश त्रिपाठी ने आगे कई सारे उदाहरण दिए हैं
उन्होंने लिखा है हमारी साहसिक रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण के लड़ाकू विमान सुखोई 30 में उड़ान भरना उन्हें प्रेरणा दे देगा
उन्होंने वर्तिका जोशी के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के महिला क्रू मेम्बर्स आई एन एस वी तरिणी इन्स्व तारिणी पर पूरे विश्व की परिक्रमा कर रही हैं उसका ज़िक्र किया है
तीन बहादुर महिलाएँ भावना कंठ मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी फाइटर पाइलट्स बनी हैं और Sukhoi30 में प्रशिक्षण ले रही हैं
क्षमता वाजपेयी की अगुवाई वाली अल्ल वूमेन क्रू ने दिल्ली से अमेरिका के सान फ्रांसिस्को और वापस दिल्ली तक एयर इंडिया बोइंग जेट में उड़ान भरी और सब की सब महिलाएँ
आपने बिलकुल सही कहा आज नारी हर क्षेत्र में न सिर्फ आगे बढ़ रही है बल्कि नेतृत्व कर रही है
आज कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सबसे पहले हमारी नारीशक्ति कुछ करके दिखा रही है
एक माइलस्टोन स्थापित कर रही है
पिछले दिनों माननीय राष्ट्रपति जी ने एक नई पहल की
राष्ट्रपति जी ने उन असाधारण महिलाओं के एक ग्रुप से मुलाकात की जिन्होंने अपनेअपने क्षेत्रों में सबसे पहले कुछ करके दिखाया
देश की ये वूमेन अचीवर्स फर्स्ट फेमले मर्चेंट नेवी कैप्टेन पैसेंजर ट्रेन की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर पहली महिला फायर फाइटर पहली महिला बस ड्राइवर अंटार्क्टिका पहुँचने वाली पहली महिला ऐवरेस्ट पर पहुँचने वाली पहली महिला इस तरह से हर क्षेत्र में फर्स्ट लेडीज हमारी नारीशक्तियों ने समाज की रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए असाधारण उपलब्धियाँ हासिल की एक कीर्तिमान स्थापित किया
उन्होंने ये दिखाया कि कड़ी मेहनत लगन और दृढसंकल्प के बल पर तमाम बाधाओं और रुकावटों को पार करते हुए एक नया मार्ग तैयार किया जा सकता है
एक ऐसा मार्ग जो सिर्फ अपने समकालीन लोगों को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा
उन्हें एक नये जोश और उत्साह से भर देगा
इन वूमेन अचीवर्स फर्स्ट लेडीज पर एक पुस्तक भी तैयार की गयी है ताकि पूरा देश इन नारी शक्तियों के बारे में जाने उनके जीवन और उनके कार्यों से प्रेरणा ले सके
यह नरेंद्रमोदी वेबसाइट पर भी ईबुक के रूप में उपलब्ध है
आज देश और समाज में हो रहे सकारात्मक बदलाव में देश की नारीशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है
आज जब हम महिला सशक्तीकरण पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं एक रेलवे स्टेशन का ज़िक्र करना चाहूँगा
एक रेलवे स्टेशन और महिला सशक्तीकरण आप सोच रहे होंगे कि इस बीच में क्या कनेक्शन है
मुंबई का माटुंगा स्टेशन भारत का ऐसा पहला स्टेशन है जहाँ सारी महिला कर्मचारी हैं
सभी विभागों में वूमेन स्टाफ चाहे कमर्शियल डिपार्टमेंट हो रेलवे पोलिस हो टिकेट चेकिंग हो अनाउंसिंग हो पॉइंट पर्सन हो पूरा 40 से भी अधिक महिलाओं का स्टाफ है
इस बार बहुत से लोगों ने गणतंत्र दिवस की परेड देखने के बाद ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया पर लिखा कि परेड की एक मुख्य बात थी बीएसएफ बाइकर कंटिंजेंट जिसमें सब की सब महिलाएँ भाग ले रहीं थी
साहसपूर्ण प्रयोग कर रही थीं और ये दृश्य विदेश से आये हुए मेहमानों को भी आश्चर्यचकित कर रहा था
सशक्तीकरण आत्मनिर्भरता का ही एक रूप है
आज हमारी नारीशक्ति नेतृत्व कर रही है
आत्मनिर्भर बन रही है
वैसे ही एक बात मेरे ध्यान में आई है छत्तीसगढ़ की हमारी आदिवासी महिलाओं ने भी कमाल कर दिया है
उन्होंने एक नई मिसाल पेश की है
आदिवासी महिलाओं का जब ज़िक्र आता है तो सभी के मन में एक निश्चित तस्वीर उभर कर आती है
जिसमें जंगल होता है पगडंडियां होती हैं उन पर लकड़ियों का बोझ सिर पर उठाये चल रही महिलाएँ
लेकिन छत्तीसगढ़ की हमारी आदिवासी नारी हमारी इस नारीशक्ति ने देश के सामने एक नई तस्वीर बनाई है
छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा इलाक़ा जो माओवादप्रभावित क्षेत्र है
हिंसा अत्याचार बम बन्दूक पिस्तौल माओवादियों ने इसी का एक भयानक वातावरण पैदा किया हुआ है
ऐसे ख़तरनाक इलाक़े में आदिवासी महिलाएँ एरिक्शा चला कर आत्मनिर्भर बन रही हैं
बहुत ही थोड़े कालखंड में कई सारी महिलाएँ इससे जुड़ गयी हैं
और इससे तीन लाभ हो रहे हैं एक तरफ जहाँ स्वरोजगार ने उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है वहीँ इससे माओवादप्रभावित इलाक़े की तस्वीर भी बदल रही है
और इन सबके साथ इससे पर्यावरणसंरक्षण के काम को भी बल मिल रहा है
यहाँ के ज़िला प्रशासन की भी सराहना करता हूँ ग्रांट उपलब्ध कराने से ले कर ट्रेनिंग देने तक ज़िला प्रशासन ने इन महिलाओं की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
हम बारबार सुनते आये हैं कि लोग कहते हैं कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी
वो बात क्या है वो बात है फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन ट्रांसफॉर्मेशन
जो कालबाह्य है उसे छोड़ना जो आवश्यक है उसका सुधार स्वीकार करना
और हमारे समाज की विशेषता है आत्मसुधार करने का निरंतर प्रयास सेल्फकरेक्शन ये भारतीय परम्परा ये हमारी संस्कृति हमें विरासत में मिली है
किसी भी जीवनसमाज की पहचान होती है उसका सेल्फ करेक्टिंग Mechanism
सामाजिक कुप्रथाओं और कुरीतियों के ख़िलाफ सदियों से हमारे देश में व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर लगातार प्रयास होते रहे हैं
अभी कुछ दिन पहले बिहार ने एक रोचक पहल की
राज्य में सामाजिक कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए 13 हज़ार से अधिक किलोमीटर की विश्व की सबसे लम्बी मानवश्रृंखला ह्यूमन चैन बनाई गयी
इस अभियान के द्वारा लोगों को बालविवाह और दहेज़प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ़ जागरूक किया गया
दहेज़ और बालविवाह जैसी कुरीतियों से पूरे राज्य ने लड़ने का संकल्प लिया
बच्चे बुजुर्ग जोश और उत्साह से भरे युवा माताएँ बहनें हर कोई अपने आप को इस जंग में शामिल किये हुए थे
पटना का ऐतिहासिक गाँधी मैदान से आरंभ हुई मानवश्रृंखला राज्य की सीमाओं तक अटूटरूप से जुड़ती चली गई
समाज के सभी लोगों को सही मायने में विकास का लाभ मिले इसके लिए ज़रुरी है कि हमारा समाज इन कुरीतियों से मुक्त हो
आइये हम सब मिलकर ऐसी कुरीतियों को समाज से ख़त्म करने की प्रतिज्ञा लें और एक न्यू इंडिया एक सशक्त एवं समर्थ भारत का निर्माण करें
मैं बिहार की जनता राज्य के मुख्यमंत्री वहाँ के प्रशासन और मानव श्रृंखला में शामिल हर व्यक्ति की सराहना करता हूँ कि उन्होंने समाज कल्याण की दिशा में इतनी विशेष एवं व्यापक पहल की
मेरे प्यारे देशवासियो मैसूर कर्नाटक के श्रीमान् दर्शन ने माइगोव पर लिखा है उनके पिता के ईलाज़ पर महीने में दवाइयों का खर्च 6 हज़ार रूपये होता था
उन्हें पहले प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना के बारे में जानकारी नहीं थी
लेकिन अब जब उन्हें जनऔषधि केंद्र के बारे में जानकारी मिली और उन्होंने वहाँ से दवाइयाँ ख़रीदी तो उनका दवाइयों का खर्च 75 प्रतिशत तक कम हो गया
उन्होंने इच्छा जताई है कि मैं इसके बारे में मन की बात कार्यक्रम में बात करूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे और वे इसका लाभ ले सकें
पिछले कुछ समय से बहुत लोग मुझे इस विषय में लिखते रहते थे बताते रहते हैं
मैंने भी कई लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर भी देखे है जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है
और इस तरह की जानकारी जब मिलती है तो बहुत खुशी होती है
एक गहरा संतोष मिलता है
और मुझे यह भी बहुत अच्छा लगा कि श्रीमान् दर्शन जी के मन में ये विचार आया कि जो उन्हें मिला है वो औरों को भी मिले
इस योजना के पीछे उद्देश्य है हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाना और ईज़ ओएफ लाइविंग को प्रोत्साहित करना
जनऔषधि केन्द्रों पर मिलने वाली दवाएं बाज़ार में बिकने वाली ब्रैंडेड दवाइयों से लगभग 50 से 90 तक सस्ती हैं
इससे जनसामान्य विशेषकर प्रतिदिन दवाएं लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की बहुत आर्थिक मदद होती है बहुत बचत होती है
इसमें ख़रीदी जानेवाली जेनेरिक दवाएं वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन के तय स्टैंडर्ड के हिसाब से होती हैं
यही कारण है कि अच्छी क्वालिटी की दवाएं सस्ते दाम पर मिल जाती हैं
आज देशभर में तीन हज़ार से ज्यादा जनऔषधि केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं
इससे न सिर्फ दवाइयाँ सस्ती मिल रही हैं बल्कि इंडिविड्यूअल एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी रोज़गार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं
सस्ती दवाइयाँ प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्रों और अस्पतालों के अमृत स्टोर्स पर उपलब्ध हैं
इन सब के पीछे एक मात्र उद्देश्य है देश के ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति को क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ सर्वाइस उपलब्ध करवाना ताकि एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण किया जा सके
मेरे प्यारे देशवासियो महाराष्ट्र से श्रीमान् मंगेश ने नरेंद्र मोदी मोबाइल App पर एक फोटो शेयर की
वो फोटो ऐसी थी कि मेरा ध्यान उस फोटो की ओर खींचा चला गया
वो फोटो ऐसी थी जिसमें एक पोता अपने दादा के साथ क्लीन मोरना रिवर सफाई अभियान में हिस्सा ले रहा था
मुझे पता चला कि अकोला के नागरिकों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत मोरना नदी को साफ़ करने के लिए स्वच्छता अभियान का आयोजन किया था
मोरना नदी पहले बारह महीने बहती थी लेकिन अब वो सीजनल हो गई है
दूसरी पीड़ा की बात है कि नदी पूरी तरह से जंगली घास जलकुम्भी से भर गई थी
नदी और उसके किनारे पर काफ़ी कूड़ा फेका जा रहा था
एक एक्शन प्लान तैयार किया गया और मकरसंक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को मिशन क्लीन मोरना के प्रथम चरण के तहत चार किलोमीटर के क्षेत्र में चौदह स्थानों पर मोरना नदी के तट के दोनों किनारों की सफाई की गई
मिशन क्लीन मोरना के इस नेक कार्य में अकोला के छह हज़ार से अधिक नागरिकों सौ से अधिक न्गोस कॉलेजेस स्टूडेंट्स बच्चे बुजुर्ग माताएँबहनें हर किसी ने इसमें भाग लिया
20 जनवरी 2018 को भी ये स्वच्छताअभियान उसी तरह जारी रखा गया और मुझे बताया गया है कि जब तक मोरना नदी पूरी तरह से साफ़ नही हो जाती ये अभियान हर शनिवार की सुबह को चलेगा
यह दिखाता है कि अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है
जनआंदोलन के माध्यम से बड़े से बड़े बदलाव लाये जा सकते हैं
मैं अकोला की जनता को वहाँ के ज़िला एवं नगरनिगम के प्रशासन को इस काम को जनआंदोलन बनाने के लिए जुटे हुए सब नागरिकों को आपके इन प्रयासों को बहुतबहुत बधाई देता हूँ और आप का ये प्रयास देश के अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा
मेरे प्यारे देशवासियो इन दिनों पद्मपुरस्कारों के संबंध में काफी चर्चा आप भी सुनते होंगे
अख़बारों में भी इस विषय में tव
पर भी इस पर ध्यान आकर्षित होता है
लेकिन थोड़ा अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको गर्व होगा
गर्व इस बात का कि कैसेकैसे महान लोग हमारे बीच में हैं और स्वाभाविक रूप से इस बात का भी गर्व होगा कि कैसे आज हमारे देश में सामान्य व्यक्ति बिना किसी सिफ़ारिश के उन ऊँचाइयों तक पहुँच रहें हैं
हर वर्ष पद्मपुरस्कार देने की परम्परा रही है लेकिन पिछले तीन वर्षों में इसकी पूरी प्रक्रिया बदल गई है
अब कोई भी नागरिक किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है
पूरी प्रक्रिया ओनलाइन हो जाने से ट्रांसपेरेंसी आ गई है
एक तरह से इन पुरस्कारों की चयनप्रक्रिया का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है
आपका भी इस बात पर ध्यान गया होगा कि बहुत सामान्य लोगों को पद्मपुरस्कार मिल रहे हैं
ऐसे लोगों को पद्मपुरस्कार दिए गए हैं जो आमतौर पर बड़ेबड़े शहरों में अख़बारों में टीवी में समारोह में नज़र नहीं आते हैं
अब पुरस्कार देने के लिए व्यक्ति की पहचान नहीं उसके काम का महत्व बढ़ रहा है
आपने सुना होगा श्रीमान् अरविन्द गुप्ता जी को आपको जान करके ख़ुशी होगी ईआईटी कानपुर के छात्र रहे अरविन्द जी ने बच्चों के लिए खिलौने बनाने में अपना सारा जीवन खपा दिया
वे चार दशकों से कचरे से खिलौने बना रहे हैं ताकि बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ा सकें
उनकी कोशिश है कि बच्चे बेकार चीज़ों से वैज्ञानिक प्रयोगों की ओर प्रेरित हों इसके लिए वे देशभर के तीन हज़ार स्कूलों में जाकर 18 भाषाओं में बनी फ़िल्में दिखाकर बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं
कैसा अद्भुत जीवन कैसा अद्भुत समर्पण एक ऐसी ही कहानी कर्नाटक के सितावा जोद्दती सितवा जोड़त्ती की है
इन्हें महिलासशक्तीकरण की देवी ऐसे ही नहीं कहा गया है
पिछले तीन दशकों से बेलागवी बेलागावी में इन्होंने अनगिनत महिलाओं का जीवन बदलने में महान योगदान दिया है
इन्होंने सात वर्ष की आयु में ही स्वयं को देवदासी के रूप में समर्पित कर दिया था
लेकिन फिर देवदासियों के कल्याण के लिए ही अपना पूरा जीवन लगा दिया
इतना ही नहीं इन्होंने दलित महिलाओं के कल्याण के लिए भी अभूतपूर्व कार्य किये हैं
आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश के भज्जू श्याम के बारे में श्रीमान् भज्जू श्याम का जन्म एक बिलकुल ग़रीब परिवार आदिवासी परिवार में हुआ था
वे जीवन यापन के लिए सामान्य नौकरी करते थे लेकिन उनको पारम्परिक आदिवासी पेंटिंग बनाने का शौक था
आज इसी शौक की वजह से इनका भारत ही नहीं पूरे विश्व में सम्मान है
नेदरलैंड्स जर्मनी इंग्लैंड इटाली जैसे कई देशों में इनकी पेंटिंग प्रदर्शनी लग चुकी है
विदेशों में भारत का नाम रोशन करने वाले भज्जू श्याम जी की प्रतिभा को पहचाना गया और उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया
केरल की आदिवासी महिला लक्ष्मीकुट्टी की कहानी सुनकर आप सुखद आश्चर्य से भर जायेंगे
लक्ष्मीकुट्टी कल्लार में शिक्षिका हैं और अब भी घने जंगलों के बीच आदिवासी इलाके में ताड़ के पत्तों से बनी झोपड़ी में रहती हैं
उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पर ही पांच सौ हर्बल मेडिसिन बनाई हैं
जड़ीबूटियों से दवाइयाँ बनाई है
सांप काटने के बाद उपयोग की जाने वाली दवाई बनाने में उन्हें महारत हासिल है
लक्ष्मी जी हर्बल दवाओं की अपनी जानकारी से लगातार समाज की सेवा कर रही हैं
इस गुमनाम शख्शियत को पहचान कर समाज में इनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया
मैं आज एक और नाम का भी जिक्र करने का मेरा मन करता है
पश्चिम बंगाल की 75 वर्षीय सुभासिनी मिस्त्री को भी
उन्हें पुरस्कार के लिए चुना गया
सुभासिनी मिस्त्री एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अस्पताल बनाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांजे सब्जी बेची
जब ये 23 वर्ष की थीं तो उपचार नहीं मिलने से इनके पति की मृत्यु हो गई थी और इसी घटना ने उन्हें गरीबों के लिए अस्पताल बनाने के लिए प्रेरित किया
आज इनकी कड़ी मेहनत से बनाए गए अस्पताल में हजारों गरीबों का निशुल्क इलाज किया जाता है
मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहुरत्नावसुंधरा में ऐसे कई नररत्न हैं कई नारीरत्न हैं जिनको न कोई जानता है न कोई पहचानता है
ऐसे व्यक्तियों की पहचान न बनना उससे समाज का भी घाटा हो जाता है
पद्मपुरस्कार एक माध्यम है लेकिन मैं देशवासियों को भी कहूँगा कि हमारे आसपास समाज के लिए जीने वाले समाज के लिए खपने वाले किसी न किसी विशेषता को ले करके जीवन भर कार्य करने वाले लक्षावधि लोग हैं
कभी न कभी उनको समाज के बीच में लाना चाहिए
वो मानसम्मान के लिए काम नहीं करते हैं लेकिन उनके कार्य के कारण हमें प्रेरणा मिलती है
कभी स्कूलों में कॉलेजेस में ऐसे लोगों को बुला करके उनके अनुभवों को सुनना चाहिए
पुरस्कार से भी आगे समाज में भी कुछ प्रयास होना चाहिए
मेरे प्यारे देशवासियो हर वर्ष 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं
यही 9 जनवरी है जब पूज्य महात्मा गाँधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे
इस दिन हम भारत और विश्व भर में रह रहे भारतीयों के बीच अटूटबंधन का जश्न मनाते हैं
इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस पर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जहाँ विश्व भर में रह रहे भारतीयमूल के सभी सांसदों को और मेयरों मेयर्स को आमंत्रित किया था
आपको यह जानकर खुशी होगी कि उस कार्यक्रम में मलेशिया न्यू जीलैंड स्विट्जरलैंड पोर्तुगल मॉरिशियस फिजी तंजानिया केन्या कैनाडा ब्रिटेन सूरिनाम दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका से और भी कई देशों से वहाँ जहाँजहाँ हमारे मेयर हैं मूल भारतीय जहाँजहाँ सांसद है मूलभारतीय उन सब ने भाग लिया था
मुझे खुशी है कि विभिन्न देशों में रह रहे भारतीयमूल के लोग उन देशों की सेवा तो कर ही रहे हैं साथ ही साथ वे भारत के साथ भी अपने मजबूत संबंध बनाए रखे हैं
इस बार यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन ने मुझे कैलेंडर भेजा है जिसमें उन्होनें यूरोप के विभिन्न देशों में रह रहे भारतीयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदानों को एक अच्छे ढंग से दर्शाया है
हमारे मूलभारतीय लोग जो यूरोप के भिन्नभिन्न देशों में बस रहे हैं कोई साइबर सिक्यूरिटी में काम कर रहा है तो कोई आयुर्वेद को समर्पित है कोई अपने संगीत से समाज के मन को डुलाता लाता है तो कोई अपनी कविताओं से
कोई क्लाइमेट चंगे पर शोध कर रहा है तो कोई भारतीय ग्रंथों पर काम कर रहा है
किसी ने ट्रक चलाकर गुरुद्वारा खड़ा किया है तो किसी ने मस्जिद बनाई है
यानी जहाँ भी हमारे लोग हैं उन्होंने वहाँ की धरती को किसी न किसी तरीके से सुसज्जित किया है
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यूरोपीय यूनियन के इस उल्लेखनीय कार्य के लिए भारतीय मूल के लोगों को रिकॉग्नाइज करने के लिए और उनके माध्यम से दुनिया भर के लोगों को जानकारी देने के लिए भी
30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्यतिथि है जिन्होंने हम सभी को एक नया रास्ता दिखाया है
उस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं
उस दिन हम देश की रक्षा में अपनी जान गवां देने वाले महान शहीदों को 11 बजे श्रद्दांजलि अर्पित करते हैं
शांति और अहिंसा का रास्ता यही बापू का रास्ता
चाहे भारत हो या दुनिया चाहे व्यक्ति हो परिवार हो या समाजपूज्य बापू जिन आदर्शों को ले करके जिए पूज्य बापू ने जो बातें हमें बताई वे आज भी अत्यंत रिलेवेंट हैं
वे सिर्फ कोरे सिद्दांत नहीं थे
वर्तमान में भी हम डगरडगर पर देखते हैं कि बापू की बातें कितनी सही थीं
अगर हम संकल्प करें कि बापू के रास्ते पर चलें जितना चल सके चलें तो उससे बड़ी श्रद्दांजलि क्या हो सकती है
मेरे प्यारे देशवासियो आप सब को 2018 की शुभकामनायें देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ
बहुतबहुत धन्यवाद